यहा पे तिन चार आदमी दिखाई देरे है बहोत सारे घर में सा लगाया गया है।

यहा पे दो कुड्सी दिखाई देरा है टेबल सा दिखाई देरा है पाणी का बोटल धरा हुआ दिखाई देरा है यहा पे चित्र हुंदा लिखा हुआ दिखाई देरा है रेड कलर से यहा पे भी एक आदमी दिखाई देरा है।

यहा पे आदमी सब बेठे हुए है कुड्सी सा लगा हुआ है दोनों साइड से आदमी से बेठे हुए है पेपर सा पड़ रहे है कुच्छ पेन कॉपी हाथ में लगे हुए है।

यहा पे ओम का परछाई दिखाई देरा है यहा पे पर्दा दिखाई देरा है यहा पे संकर भगवान का फोटो दिखाई देरा है।

यहा पे एक गेस सी खिड़की दिखाई देरा है वहा पे वे पर्दा लगा हुआ दिखाई देरा है।

इस साइड भी सामान शटर खुला हुआ दिखाई देरा है उपर पोस्टर सा दिखाई देरा है उपर कम्पनी लिखा हुआ दिखाई देरा है।

यहा पे भगवान सा मूर्ति सा दिखाई देरा है बहोत भगवान का मूर्ति धरा हुआ दिखाई देरा है एक भगवान पर बहोत सारे फुल सा चडाया हुआ है एक आदमी पूजा कर रहे है जो आदमी दीप लेजाये।

और दीवार पर भी भगवान का मूर्ति चिपकाया गया है राम जी का--

इंडोर ब्लॉक दिखाई देरा है जिसपर पोस्टर पर लिखा गया है।

यहा पे दो आदमी फोटो सेल्फी लेरे हुए दिखाई देरे है कार्टून दो ऊनी निकले हुए है यहा पे जिम क्लास दिखाई दे रहा है जिम क्लास में बहोत सारे आदमी जिम कर रहे है और येअर्फोने लगा के दिखाई देरा है।

यापे मंदिर का दिखाई देरा है जो रंगा हुआ दिखाई देरा है।

आसमान का रंग नीला छाया हुआ दिखाई देरा है और उपर से कुछ लॉज जेसा बना हुआ दिखाई देरा है साइड एक खजूर का पेड दिखाई देरा है।

और पेड़ पोधा दिखाई देरा है और साइड में बहोत सारा पेड़ पोधा सा दिखाई देरा है और आसमान का रंग बीचे दिखाई देरा है।

में बड़ा सा नदी दिखाई दे रा है यहां पे एक बड़ा सा जहाज दिखाई दे रहा है नाव दिखाई दे रहा है।

जरा सा बंधा हुआ दिखाई देरा है यहा पे सूर्य बड़ा सा दिखाई देरा है आसमान का रंग बिछे दिखाई डेरा है कटे कटे--

कटे कटे छड से दिखाई देरा है।

पेड़ सा दिखाई देरा है ये सभी पेड़ सा दिखाई देरा है आसमान का रंग उजला दिखाई देरा है।

दिखाई दे रहा है जिसका गेट लॉक किया गया है और यहां पे पेड़ सा दिखाई दे रहा है जिसमें लाइट लगा हुआ है यहां पे खंभा दिखाई दे रहा है।

और यहा पे एक बोटल टंगा हुआ दिखाई देरा है यहा पे ढोल दिखाई देरा है यहा पे रास्ता बंद हुआ दिखाई देरा है।

यहा पे एक बरा सा घर दिखाई देरा है घर के उपर बहोत सारा सोर सा लगाया गया लाइट सा लगाया गया है और बहर पोस्टर लगाया गया है बड़ी विलर का लगाया गया है।

यहा पे एक पोस्टर दिखाई देरा है जो पिला कलर में पड़ा है इसमें कुछ लिखा हुआ उर्दू में दिखाई देरा है और यहा तिन चार आदमी दिखाई देरा है यह अपे खेली दिखाई देरा है यहा पे--

घर जेसा बना हुआ हुआ दिखाई देरा है यही पर एक दो आदमी जरा हुआ दिखाई डेरा है कुछ भेस सा दिखाई देरा है हरियाली छाय हुई है जंगल जेसा दिखाई देरा है।

और उदर गाव का दिखाई देरा है गर सब छोटा छोटा सा दिखाई देरा है।

ग्रिल जेसा गेट सा गेरा गया है और यहा उपर से एक और कुछ रखा गया है।

और ये साइड भी चक्कर में बॉल्स सा दिखाई यहां पे तिरंगा का चित्र परा हुआ है अंदर पैसेंजर से दिखाई दे रहा है।

यहां पे मोटरसाइकिल सा दिखाई दे रहा है। साईड ही साईड दो आदमी दिखाई दे रहा है। यहां पे घेरा हुआ दिखाई दे रहा व्हाइट कलर से। और ग्रिल लगा हुआ है यहां पे सिंगल जैसा दो तीन मोटरसाइकिल लगा हुआ है।

और यहा पे दो काछी दिखाई देरा है जो बहोत लम्बा है और यह अपे एक पोस्टर लगा हुआ उपर दिखाई देरा है घर के उपर।

खली स्थान दिखाई देरा है रेतीला जमीन दिखाई देरा है जिसमे बहोत सारे आदमी सा दिखाई देरा है समुन्द्र सा दिखाई देरा है।

यहाँपे एक कार ही पिकंप दिखाई देरा है जो वाइट कलर का है यहा पे फुल दिखाई देरा है यहा पे आगे पेड़ दिखाई देरा है।

ये एक मॉल है मॉल में यहा पे बहोत सारा सामान सा है यहा पे ठण्डा सा रखा हुआ है बहोत सारा पिने वाला रस सब रखा गया है।

और यहा पे मोटरसाईकिल सा लगा हुआ है ये साइड दो घर जेसा है जिसमे बहोत लाइट कलर आसमान का रंग अलग छाया हुआ है ।

और यह इधर कुत्ता सा भी दिखाई देरा है इधर भही उट सा दिखाई देरा है आसमान का रंग नीला दिखाई देरा है एक चिड़िया सा भी दिखाई देरा है एक और पाणी सा दिखाई देरा है एक नदी है।

यहां पर सोफा सा दिखाई दे रहा है यहां पे तीन आदमी दिखाई दे रहा है यहां पर टोपी पहना एक आदमी दिखाई दे रहा--

उपना सी टंगा हुआ दिखाई देरा है यहा पे कुछ लिखा हुआ दिखाई देरा है।

कुड्सी पे बेठे हुए है के चिला रे है यहा पे--

येलो दिखाई दे रहा है सीसा लगा हुआ दिखाई दे रहा है यहा पे--

यहां पे एक मोटरसाइकिल दिखाई दे रहा है इस साइड भी एक मोटरसाइकिल दिखाई दे रहा है यहां पे एक दुकान दिखाई दे रहा है जिसमें समान सा बिक रहा है और कठपुतली दिखाई दे रहा है कपड़ा पहना हुए दिखाई दे रहा है ऊपर --

और यहा साइड भी एक घर दिखाई देरा है।

बहोत सा आदमी दिखाई दे रहा है यहा पे दुकान सा दिखाई देरा है यहा पे पोस्टर सा बोर्ड टंगा हुआ दिखाई देरा है पीछे बहोत बड़ा रंगा हुआ गर दिखाई देरा है रंग बिरंगी--

हरियाली छाया हुआ है पेड़ पोधा सा दिखाई दे रहा है आसमान थोडा थोडा लग रहा है जी वाइट कलर का दिखाई देरा है।